आ बहुत सारा सामान रखा हुए है जिम का बेठने का है सामान और मिरर है लाइट्स है और कुछ लोग है जो की खाद ए हे कर रहे है।

और उधर कुछ लोग है जो की खड़े है और एक खम्भा है बास का गाड़ा हुआ है उधर अ प्लास्टिक उधर बिछाया हुआ है चौकी है खुशी है पेड़ है आसमान है।

बिछा रहे है है और यहा पे बोरा रखा हुआ है उधर हम देख पा रहे है के बहुत जादा धूल गिर रहा है और पुल बनाया हुआ है।